और आसपास छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे--

जो कलरफुल है और सुंदर है।

जिस पर एक आदमी खड़ा है और फोटो खीचा रहा है और यहां का मौसम बहोत अच्छा --

और वह बहोत मेहनत कर रहा है।

और एक आदमी इन्हे बेच रहा है।

और एक खंभा भी दिखाई दे रहा है जो बहोत लंबा--

पर एक पीले रंग का घर देखने को मिल रहा है।